व्हाइट कलर का खंबा दिख रहा है जिस पर एक व्हाइट कलर की लोहे की छड़ लगी हुई है।

साइड ब्लैक और ऑरेंज कलर की मछलियां है एक साइड वाली मछलियों में कुछ मछलियां झुंड बनाकर पड़ी हुई है और कुछ मछलियां जो है मरी हुई दिखाई दे रही है।